फोटो मे कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

प्लेट रखी हुई हे व्हाइटनर रखा हुआ है।

सफ़ेद और नीले कलर की टी-शर्ट भी नज़र आ रही हैं।

ऑटो में एक ऑटो में आठ रही है।

और कुछ बच्चे फुटबॉल दिख रही है। फुटबॉल --

कार नज़र आ रही है टायर नज़र आ रहें हैं।

गोपाल गंज शाखा लिखा हुआ है।

एक कार दिख रही है। एक--

लाइट्स नज़र आ रही है।

उनके पीछे एक दीवार में गोल -गोल छॆद नजर आ रहे हैं ।

बहुत सारे कुर्सियां दिख रही है लाल कपड़ा रखा हुआ है जिन पर।